यंहा पर एक पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे ट्रक वगैरह एक साथ देखे जा सकते हैं अगल-बगल में कुछ बाईके वगैरह खड़ी हुई है। सामने कुछ लाइट के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर नीला आकाश देखा जा सकता है जिसकी दूसरी तरफ भी बहुत सारे लाइट के पोल लगे हुए देखे जा सकते हैं। सामने एक नीले रंग से कुछ पेंट किया हुआ --

अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ देखे जा सकते हैं ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई लोगों को एक साथ देखा जा सकता है सामने एक पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग देखे जा सकते हैं। सामने एक टेंपो खड़ी है जिसे ग्रीन कलर से पेंट किया गया है।

यहाँ पर एक ओपन ग्राउंड देखा जा सकता है जहाँ पे एक बस खड़ी है और उसके सामने ही एक ट्रक खड़ी है। बस का कलर सफ़ेद देखा जा रहा है।

यहाँ पर एक न पूल दिखाई दे रहा है। जिसके निचे पानी लगी हुई है।

अगल-बगल में भी कुछ लोगों को आते जाते साफ तौर पे देखा जा सकता है। इसकी दूसरी तरफ बहोत सारी --

और ऊपर से स सन की रोशनी आते हुए साफ़ देखी जा सकती है। अगल-बगल में बोहोत सारे पेड़ वगैरा लगाए गए हैं और एक व्यक्ति के कंधे पर बैग लगा हुआ देखा जा --

जिनके हाथ में कुछ पेपर वगैरा रखा हुआ है सामने कुछ डेस्क दिखाई दे रही हैं इसके पीछे कुछ खिड़कियाँ बनी हुई हैं । बाहर से अंदर रोशनी आती हुई साफ देखी जा सकती है। बाहर में कुछ पेड़ वगैरा भी लगाए गए हैं यह देखने में बोहत सुन्द --

पर एक मीटिंग होती हुई देखी जा सकती है जहाँ पर बहोत सारे लोगों को दिख अ एक साथ बैठे हुए देखा जा सकता है | सामने एक काले रंग की टेबल लगी हुई है।

सामने प्रोजेक्टर ऑन हुआ है जहाँ पर एक व्यक्ति लाल रंग के शर्ट पहने हुए है व खड़ा होकर के सभी चीज़ों को अच्छे से समझा रहा है | पीछे की दीवाल सफ़ेद दिखाई दे रही है ।

और अंदर एक ए सी लगी हुई है। अंदर बोहत सारी सफ़ेद रंग की लाइटें जलती हुई साफ देखी जा सकतीं हैं। एक व्यक्ति है जोकि मोबाइल चलाता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लड़के लड़किया को एक साथ देखा जा सकता है। सामने एक महिला दिखाई दे रही है। जिसने पीले रंग की साड़ी पहन रखी है और उसके दूसरे तरफ यहाँ पर --

नीचे पक्की फर्श दिखाई दे रही है जो कि काले रंग की है और सामने यहाँ पर कुछ डस्टबिन जैसा भी कुछ रखा गया है।

यहां पर बहुत सारी महिलाओं को एक साथ देखा जा सकता है जिसमें सभी लोगो ने साड़ी पहन रखी है और अगल-बगल में कुछ लड़को को देखा जा सकता है। अगल-बगल में कुछ यहाँ पे डेस्क वगैरह बनाये गए है।

बहोत सारे लड़को को एक साथ देखा जा सकता हैं| सामने कुछ डे डेस्क वगेरा लगायी गयी हैं| बाहर से अन्दर रोशनी आती हुई साफ देखी जा सकती है।

अगल-बगल में बोहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं। ऊपर कुछ पंखा लगा हुआ है। नीचे रेड कलर कि कारपेट बिछी हुई है।

ते हैं। नीचे एक कचड़े का दुग ढैर देखा जा सकता है जहाँं पर कचड़ा फेका जाता है। उ --

ऊपर सफेद रंग की लाइटें जलती हुई साफ देखी जा सकती है और यहाँ पर ऊपर में एक बड़ा सी पंखा दिखाई दे रहा है। सामने कुछ सीजर बगैरा रखी गई है और --